और बहुत सारे लोग आए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एल_पी_जी जी_पी_एस फिटिंग सेंटर करते हैं।

इस चित्र में हमे यहां पर खेत का चित्र दिखाया गया है।